ये कैफ़े रैशु कैफ़ थर्टीन एंड रेस्टोरेंट ही है।

पाँच-छह लोग नहीं चार-पांच लोग घुम्म जा रहे हैं।

जो सादी में और पार्टियों में यूज़ की जाती है। यहाँ तक कि --

एक्सरसाइज करके बता रहा है।

बहोत सारे प्रोडक्ट टंगे हुए हैं।

ओनली फोटो शूटर कर रहा है।

तरह-तरह के फूल वाइट कलर में भी हैं।